इस फोटो में मुझे एक बोर्ड दिख रहा है पर्पल कलर का जिसमें स्वीट होम गर्ल्स पी_जी लिखा हुआ है।

फोटो में मुझे बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं जैसे कि एप्पल ग्रेप्स ऑरेंज और वाटरमेलन --

इस फोटो में मुझे एक कमरा दिख रहा है जिसमें ब्लैक कलर के चेयर दिख रहे है।

जिसने पिलो रखा गया है और वाइट कलर के दो छोटे छोटे टेबल भी रखे हुए हैं।

डैम का ऊपर कुछ रेलिंग्स भी लगा हुआ--

सामने में येलो कलर का शेल्फ भी है जिसमें बहुत सारे फ्लॉवर पॉट रखे हुए हैं।

बहुत सारे फ्लावर भी हैं उसके कॉर्नर में एक और वाइट कलर का दीवार है जिसमें भी--

हैं और उनमें भी बहुत सारे फोटो फ्रेम्स और कुछ सामान रखे हुए--

इसके नीचे दो गाड़ियां रखी हुई है एक ब्लैक और एक व्हाइट ।

बिल्डिंग में बहुत सारे रूम है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में बहुत सारे कपड़े भी सुंघा सुखा के रखे हुए हैं।

इस कमरे का दीवार क्लोज और बंद है और इस दीवार में बहुत अलग अलग कलरफुल --

छोटा सा घर दिख रहा है जिसमें उठने के लिए सीढ़ी बनाया हुआ है।

और इसके कोने में एक दीवार है।

और बहुत सारे घास फूस भी हैं।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जो वाइट और ब्लू कलर में पेंटेड है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं।

उस आदमी ने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना हुआ है और गले में मफलर लगाया हुआ है।

बस के पीछे और एक बस है लाल कलर में--

इस फोटो में मुझे एक आदमी दिख रहा है जो अपने बाइक के सामने खड़ा हुआ है और कुछ सामान निकाल रहा है।

वो आदमी ने लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं जो नदी में खड़े होकर प्रे कर रहे हैं।

इसमें बहुत ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे घास हैं।

इस फोटो में मुझे एक कमरा दिख रहा है जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइज के समान रखे हुए हैं।

उसके सामने एक आदमी फोटो भी खींच रहा है।

इस कमरे का दीवार व्हाईट कलर का है।

इस फोटो में मुझे कुछ लड़कियां क्रिकेट खेलती हुई दिख रही है वो एक मैदान में क्रिकेट खेल रही है।

जिसके कॉर्नर में एक ट्रेन चलकर भी है।

और यहां पर एक बॉक्स भी है जिसमें आइसक्रीम रखा हुआ है।

ऊपर में बहोत सारे ट्यूबलाइट्स जल रहे हैं।

और दोनों के पीछे एक पर्पल कलर का दीवार है जिसमें बहोत सारे बलून चिपकाए गए हैं और एक पोस्टर भी चिपकाया गया है।